पीला रंग से पुताई किया हुआ एक बड़ा सा बिल्डिंग --

और जो बिजली का जो पोल होता है उससे जो तार खींची गई है वो साफ दिख रही है लाल रंग का। अ सफ़ेद रंग का एक बोले --

और विभिन्न प्रकार के कार आप विभिन्न स्टाइल के कार आप यहाँ से खरीद सकते हैं।

काफी सुन्दर आकर्षक मनमोहक दृश्य है ये।

ये एक दवा का दुकान है और निश्चित रूप से में कह सकता हूँ कि ये दवा का दुकान है। इस फोटो के माध्यम से मै देखकर आपको बता रहा हूँ।